यह एक जगह है। जहां पर बहुत सारे गेट लगे हुए हैं। और गेट के बोर्ड भी लगे हुए हैं।

यह एक बोहत बड़ा हाले जिसमे एक दुकान है। दुकान के अंदर बहोत सारा कॉस्मेटिक सामान रखा गया है।